सामने यहां पर स्लाइडर भी बने हुएं दिखाई दे रहें हैं।

इस इमेज में सामने यहां पर एक रोड दिखाई दे रही है जहां पर कार चलती नजर आ रही है सामने यहां पर--

इस इमेज में यहां पर सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जहां पर जाली का गेट बना हुआ नजर आ रहा हैं।

जहां पर पत्थर के ऊपर एक लड़का बैठा नजर आ रहा है यहां पर सामने एक पहाड़ भी दिखाई दे रहा है।

जहां पर सोफे पर दो लड़के बैठे नजर आ रहे हैं।

जहां पर नीचे ब्लैक रंग की कार खड़ी नजर आ रही है।

यहां अंदर कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं और एक पानी का कैंपर भी रखा हुआ नजर आ रहा है।